मंदिर में लाइटे जल रही हैं।

कुछ पाउच भी है बॉक्स भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में खिलौनों की दुकान दिखाई दे रही है।

जिसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

और लाल रंग का लोहा भी लगा हुआ है।

इस फोटो में एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

दोनों तरफ लिफ्ट भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

और शैंपू फेस वॉश बॉडी लोशन वगैरा भी रखे हुए हैं कॉर्नफ्लेक्स भी हैं।

इस फोटो में टेंट जैसा लगा हुआ है।

भगवान जी की मूर्तियां रखी हुई हैं।

और बीच में एक पेड़ लगा हुआ है।

पेड़ के अंदर भी मूर्ति और कुर्सी है।

काउंटर पर एक रजिस्टर और कुछ डिब्बे रखे हुए हैं और बहोत सारा सामान है।

बहोत सारी बड़ी बड़ी राखियां है जो अलगनी पर टंगी हुई है।

इसमें बहोत सारी लाइटें भी जल रही हैं।

सबने कुछ लोगों ने अलग ड्रेस दो कलर की ड्रेस पेहनी है कुछ लोगों ने व्हाइट कुछ लोगों ने ग्रीन --

रोड के एक तरफ गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं।